आसमान में बादल नजर आ रहे हैं और यहां पे पेड़ भी नजर आ रहा है और वायरिंग भी है जो करंट के लिए है।

एक आदमी है जो बलोन को अभी लगा रहा है जो यहाँ पे सजा कर रहे हैं --

और यहाँ पे है स्विच बोर्ड दीवार का कलर है नीला और फिरकी भी है यहाँ --

और यहां पे मैदान है बड़ा सा और यहां पे भी है जो पेट्रोल पंप दो है जो भर सकते है आप पेट्रोल पंप और यहां पे एक गाड़ी खड़ी --

और यहां पे एक आदमी है और दो बच्चे भी हैं और सामने मैदान है।

जो जा रहे है उन्हे यहां पे रास्ता भी दिख रहा है शाम का टाइम नजर आ रहा--

यहाँ पे है खम्बे हैं जो लाइट के हैं बहुत सारे यहाँ पे जो लाइटिंग का काम करते हैं यहाँ पे --

जो लगाए हुए हैं यहाँ पे शो के और --

बहोत सारे दुकान हैं यहां पे यहां पे टेलर का भी दुकान है जो एक आदमी है सी रहा है।

यहां पे बहुत बड़ा सा एक लाइन नजर आ रहा है जो यहां पे एक सिंबल है क्रिश्चियन एक--

लाइटिंग भी लगाए है एक बोर्ड है जिसमें इंस्ट्रक्शन लगा है और उसपे भी सामने का आसमान दिख रहा--

और यहां पे किया गया है दुकानें हैं यहां पे।

यहां पे प्लेट में दो मछली रखी है बहोत सारे हैं काले कलर के हैं और साइड में एक आदमी लेकर खड़ा हुआ है और एक कैरेट भी नज़र आ रहा है।

यहाँ पे एक दुकान है जिसका नाम बाल साड़ी है और यहाँ पे है --

है जो सामने है और यहां ले कंपाउंड भी मारा गया है और साइड में छोटे छोटे पेड़े जो शो के लिए हैं।

उनके खंबे हैं जो यहाँ पे बड़े बड़े फोकस है यहाँ पे --

और अंदर भी लोग हैं जो यहां पे बच्चों के कपड़े लेते दिख रहे हैं है।

और यहाँ पे बैकग्राउंड जो यहाँ पे कंपाउंड मारा गया है जाली का नजर आ रहा है और यहाँ पे ग्रीन कलर का जो खेल खेलने के लिए बनाया --